घर के बाहर गाड़ी भी पार्किंग किया हुआ है।

स्कूटी और बाइक भी दिखाई दे रहा है।

अंदर कलर का डब्बा रखा हुआ है।

उसे पेड़ में एक मनुष्य है।

उनका फेस ढका हुआ है। लाइट भी ज़्वला हुआ है।

और पॉट भी रखा हुआ है।

एक आदमी भी दिख रहा है।

गाड़ी भी पार्किंग किया हुआ है।

घर के अंदर इंसान भी दिखाई दे रहा है।

दुकान के बाहर बहुत सारा साइन बोर्ड भी लगा--

इस तस्वीर में बहुत सारे बच्चे दिखाई दे रहा है।

इलेक्ट्रिक वायर भी देखने को मिल रहा है।

यहां पत्थर भी दिखने को मिल रहा है।

तस्वीर में घर दिखाई दे रहा है।

पिक्चर में रूम दिखाई दे रहा है।

गेट को येलो कलर से पेंट किया हुआ है।

दोनों के फेस ढके हुए हैं लाइट भी जला हुआ है।

इस तस्वीर में एक घर का बरंदा दिखाई दे रहा है।